यहां पर एक बड़ा सा कबीले का घर है यहां पर एक आदमी अपनी बाइक से थे ऐ बाइक से आया है और थैला ले रहा है।

और दरवाजे लगी हुई है खिड़कियां लगी हुई है और यहाँ पर यहां पर कपड़े सुख रहे है और यहाँ पर आने जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है।